इसमें हमें कुछ वर्कर काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

एक बड़ी सी झील और नदी दिखाई दे रही हैं।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक तोप दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें एक कॉस्मेटिक शॉप --

और गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं।

जहां पर हमें कुछ वर्कर्स काम करते हुए--

यहां पर हमें कुछ व्हाइट रंग की बसे और कुछ हरे रंग की बसेज --